जैसा की मै यहाँ पर देख प् रही की यहाँ पे कुछ लोगो की भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है बोरी पर कुछ लोग --

और बोरी भी रखी हुई एक पथर सा भी रखा दिखाई दे रहा है साइकिल दिखाई दे रहा है बहोत सारा जो कि यहाँ पर--

यहाँ पर देख पा रहै है यहाँ पर एक बड़ा सा बारंदा है यहाँ पर बहोत सारा--

और यहाँ पर मुझे कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर दिवार दिखाई दे रहा है दिवार पे शटर भी लगा हुआ हैं।

आसमान का रंग कुछ इंद्रा धनुष की रंग की तरह --

और यंहा पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहै हैं जिनके हरे-हरे से पत्ते हैं और सामने की तरफ यंहा पहाड़ी सा एरिया दिखाई दे रहा है।

जैसा की मैं यहाँ पर देख पा रही हु की यह एक खुला सड़क है और यहाँ--

जैसा की मैं यहाँ पे देख पा रही हु यहाँ पे बड़ा-सा खुला मैदान है यहाँ पर हिरण दिखई दे रहा एक और एक हिरण का बच्चा--

लगा रहा है ऊपर के तरफ समन में बदल भी छाए दिखाई दे रहे है।

जैसा की मै यहाँ पर देख पा रही हु फल की बहुत दुकान दिखाई दे रही है और यह पर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए है जो कि काला रंग भी अंगर है और यह ग्रीन रंग का भी अंगर है और संतरा है।

एक आदमी सामने से सफेद रंग के शर्ट पहन के बैठा हुआ है अपने ऊँगली ऊपर उठाये हुए है एक आदमी और दराजा --